ए ओ घर हा बढ़िया दिखत हे बढ़िया दिखत हे साइकिल हा बढ़िया दिखत हे आदमी हा बढ़िया दिखत हे।

लईका मन बने दिखत हे ओका कपड़ा मन बने दिखत हे बनावत हे तहु मन बने दिखत हे फूल ह बने दिखत हे गमला फूल बढ़िया दिखत हे आदमी ह खड़े हे तहु ह बने दिखत हे दीवाल ह बने दिखत हे।

आदमी मन बने दिखत है कुर्सी मन बने दिखत है पेड़ मन बने दिखत है घर मन बने दिखत दरवाजा बने दिखत है।

डग्गा हा बने दिखत हे आदमी मन बने दिखत हे ओती के तार मन बने दिखत हे फूल हा बने दिखत हे रोड हा बने दिखत हे।

की क्रीम पाउडर बने दिखत हे वायर ह बने दिखत हे लाइट बने दिखत हे।